एक अ बिल्डिंग दिखाई गई है बिल्डिंग के पास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ एक बाजार दिखाया गया है यहाँ सेफद रंग के कट्टे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ बहुत सारी स्कूटी कुछ मोटर साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं जो सड़क के इस किनारे रख खड़ी हुईं हैं।

चारो तरफ छोटे-छोटे पेड़ व बड़े पेड़ लगे हुए है ।

कुछ बालिकाएँ बैठी हुई है तो कुछ बालिकाएँ खड़ी हुई है सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पेहने हुए है।